यहा एक छोटा सा डी_जे बाक्स भी लगा हुआ है इस्टेज भी बना हुआ है।

ने मोजा भी पहना हुआ है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है दो औरतें खड़ी जो कि साड़ी पहनी हुई हैं।

और काफी सुंदर तरह से बागान को सजाया हुआ है।

हॉल में काफी सारी लाइटे लगी हुई है।

यहां पर ये पंडित जी बैठे हुए हैं जो कि पूजा करवा रहे हैं।

उधर एक पहाड़ भी दिख रहा है जिसमें काफी सारे पेड़ है।

ए_सी भी लगा हुआ है पूरा रूम में टाइल्स भी लगा है।

यह एक बड़ी इमारत का चित्र है इमारत में लिखा हुआ है होटल नारायण प्लाजा ।

हॉल में काफी सारा चेयर लगा हुआ है लोगो के बैठने के लिए।

साइकिल्स भी दिख रहे हैं यहां कुछ पुतले में कपड़े भी लगाए हुए हैं।